टेबुल सफेद रंग का है और कुर्सियां रंग बिरंगे रंगों की है।

दीवाल पर रंग बिरंगी लाइट भी लगी हुई है।

यह तस्वीर मस्जिद की है यहां के दीवारों का रंग सफेद और हरा है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग के अंदर की है।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा नाव है जिसमें कोई कोई आदमी है।

एक पूल है जिसके सहारे जमीन से लेकर नाव तक बनाया हुआ है।

यह तस्वीर छठ पूजा के समय की है।

एक लड़की है जिसके हाथ में मोबाइल है।

यह तस्वीर एक स्कूल की हाल की है।

टेज पर बहोत सारी शिक्षक और शिक्षिकाएं खड़ी है।

बगल में दो तीन इंसान भी खड़े हैं।

एक काले रंग की टेबल भी बहुत सारी रखी हुई है।

सामने एक दीवाल है जिसमें दो खिड़कियां भी है।

यह तस्वीर एक बकुला की है यह बकुला दिखने में नीले रंग की है।

यह बकुला पानी में खड़ी है।

यह तस्वीर एक खाली जगह की है।

आसमान हल्का सफेद है।

यहां मस्जिद में एक घड़ी भी लगी हुई है जो हल्के पीले रंग की है।

एक कालीन बिछा हुआ है जो लाल और सफेद रंग का है।

यह तस्वीर एक रोड के पास की है है जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं।

यहां पर एक कढ़ाई में छोले रखे हुए हैं जिसमें एक कर्छी भी लगी हुई है।

यह तस्वीर एक मस्जिद के अंदर की है।

बगल में एक औरत भी खड़ी है जिसने अपनी गोद में एक बच्चे लिए हुए हैं।